यह एक सीढियाँ च सीढियाँ है जिसको चढ़ के हम लोग ऊपर चढ़ सकते है।

दिख रहा है यहाँ पर बहुत सारे गिलास है और गिलास से बहुत ही सुन्दर चीज़ बनाया गया है।

कुछ गाढ़ा गया है लाठी और उसमे कुछ हम्म हरा रंग का बोट छोटा-छोटा चिपकाया गया है और पीछे का बैकग्राउंड नीला-नीला भी दिख रहा है।

यह एक हरा-भरा नज़ारा है यहाँ पर मुझे खेत दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर चार पांच ठो पंखा है जो एक ही साथ में मुझे दिखाई दे रहा है।

दो दरबार यहाँ पर खड़े है सुरक्षा करने के लिए कुछ ऐसा-वैसा दुर्घटना ना हो कर के और ऊपर में रॉयल पल पल्ले रॉयल प्लस कर के लिखा हुआ है।

लगता है उसका तबीयत ख़राब है वैसा प्रतीत हो रह है क्यूंकि व बिस्तर में लेटा हुआ है उसका ईलाज हो रहा है।

ताकि हम अपना सेविंग कर सके पैसा बचा सके कभी भी जरुरत पड़ सक--

यहाँ बहुत सुंदर रूम दिखाईल दिख रहा है और यहाँ पर बहुत सारे मुसरिया भी है।

यहाँ पर रेलवे स्टेशन है और अभी तो ट्रेन गुज़र भी रहा है।

यहाँ पर एक मैदान है मैदान मे दो तीन चार लोग है और यहाँ पर एक डॉक्टर है जैसे लग रहा हैं।

बहुत सारा पानी बेह रहा हैऊपर से यहाँ पे दो लोग नाहा रहे है अगल-बगल में बहुत सारा कचरा भी है।

यहाँ पर भगवान का मूर्ति बना हुआ है।

और पीछे में बहुत सारे हरे-भरे पौधे भी है और यहाँ पर निचे जमी हरा-भरा है।

बहुत सारे दुकान भी है यहाँ पर एक महिला है जो स्क्राफ बांधी हुई है।